यख मा जी एक रोड छ रोड का किनारा मा जी कई सारी गाड़ी छन लगी कार छन लगी किनारा मा एक स्कूटी बाइक भी छन लगीयख मा जी एक बिजली को खम्बा छ बिजली का तार छन।

यख मा जी कोल्ड ड्रिंक की बोतल छन रखीपाणी की बोतल भी छन रखी यख दीवाल मा जी कैमरा छ एक लग्युं --